इसके बीच में एक पानी का फोवारा दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक होटल दिखाई दे रहा है।

लंच करते हुए नजर आ रहे हैं।

इसका नाम जारा भोजनालिया लिखा --

और बहोत छोटी छोटी मछलियां भी नजर आ रही है।

और उसमें तरह-तरह के फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हरा हरे भरे घास लगे--

और दूर एक पहाड़ी भी नजर आ रही है।

यहां पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है।

इसके अंदर बहुत सी कुर्सियां और टेबल लगे हुए हैं।

पीछे एक एल_सी_डी भी लगी हुई है।

सॉस की बोतलें भी रखी हुई--

पीछे बाजार दिखाई दे रहा है।

यहां एक ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बेड रूम दिखाई दे रहा है यहां पर बेड और कुर्सियां हैं।

यहां एक छोटा सा टेबल भी है।

इसके बाहर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर सड़क दिखाई दे रही है।

यहां पर एक व्यक्ति हाथ जोड़कर पूजा कर रहा है।

यहां दीवारों का कलर रेड नजर आ रहा है।